उसके हाथ में कुछ सामान है जो गाड़ी है वो पु पूरा खुला हुआ है।

एक औरत भी जिसने पीले रंग की स्वेटर और ड्रेस पहनी हुई है यहां बच्चे हैं उनके पास स्कूल बैग है।

बहुत सारे घर भी हैं और बहुत सारे आदमी हैं।